और यहां पे एक जो दीवार हैं वह कथा रंग किया हुआ है और पीला रंग किया हुआ है और व्हाइट कलर किया हुआ है यहां --

और ये काले रंग की है और इसके ऊपर मुकुट लगा हुआ है।

पक्षी उड़ रहे हैं और साइड में एक घर है और यहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स भी हैं वहां पे एक टॉवर है उसके नीचे बिल्डिंग है।

और इनके वहाँ पे जो वुड है वो हरे रंग का परिचय विभाग उसमे लिखा हुआ है।

जैसा कि मैं यहां पे देख पा रही हूं कि यहां पे दो बॉल रखे हुए हैं बड़े बड़े।

यहाँ पे स्विमिंग पूल का बहुत सारा गेम्स बना हुआ है और--

जैसा कि मैं यहां पे देख सकती हूं कि यहां पे एक पंडाल बना हुआ है।

और यहाँ पे सामने एक माता की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पे बहुत भीड़ है ।